खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

ये सभी बच्चे स्कूल के है और ये लोग खो-खो खेल खेल रहे है।

यहाँ छय लोग दिखाई दे रहे है।

बड़ा-सा दो छत का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ एक बोर्ड में लिखा है की--

और उस साइड में एक बहुत बड़ा घर का बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है।

और उसके बगल में कुछ दुकान दिखाई दे रही है जिसमे सभी प्रकार के वस्तुएं--

मुझे लगता है यहाँ एक चीय का कीमत पाच सौ रुपया हो सकता है।

यह नाइट में चलते हुए--

ये अपने हाथ में मोबाईल फोन को रख के आइना के सामने सेल्फ़ी ले रहा है।

छोड़ कर चले जाते है और धुलाई के बाद में उसे प्रेस कर के वापस पहुचा दिया जाता है यहाँ फोन पे का सुवीधा है और बहुत बढ़िया --

सभी प्रकार के कॉपी और पुस्तक मिलते है यहाँ महिला दिखाई दे रही है जो--

शॉपिंग करने के लिए आते है अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए खिलौने खरीदने के लिए घर का समान--

पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बोर्ड भी खाली है उसमे कुछ लिखा नहीं है और जो मशीन है पेट्रोल भरने का वो भी अभी ढका हुआ है।

यह एक महा विद्यालय है सा शासकीय कॉलेज --

और बहुत सारा लोग यहाँ पे इधर उधर घूम रहे है गार्डन का मजा ले रहे है और बड़े-बड़े पेड़ यहाँ पे लगे हुए है।